जिसके ऊपर दो क नाव दिख रहे हैं और उनके ऊपर एक दो आदमी खड़े हैं।

सामने एक तिरंगा झंडा भी दिख रहा है।

सामने एक खिड़की दिख रहा है जिसमें शीशा लगा हुआ है और एक पर्दा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बैंक दिख रहा हैं बैंक के जमीन पर वाइट कलर की टाईल्स लगी हुई है दीवार और सीलिंग का कलर सफेद है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो कि व्हाइट और ब्लू कलर का है।

इस फोटो में एक मेडिकल शॉप दिख रहा है सामने एक रेड कलर का टेबल रखा हुआ है और एक कुर्सी रखा हुआ है।

साइड में एक शटर जैसा बनाया हुआ है।

छत और दीवार का कलर वाइट है छत पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं दीवार पर दो तीन एशिया भी लगे हुआ है।

आसपास बहुत सारे पटरी दिख रहे है और कुछ लोग प्लेटफार्म पर चल रहे है।

शोरूम के ऊपर यामा लिखा हुआ है।

शोरूम के अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के बाइके पार्क है। और दो-तीन आदमिया भी दिख रहे है।

इस फोटो में एक रोड दिख रहा है रोड पर एक ब्राउन कलर का टेंपू खड़ा है और सामने एक रेड कलर टी शर्ट पहने हुए आदमी खड़ा है।

सामने शाम का मौसम है एक सुरज दिख रहा है आसमान में और आस पास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं।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

इस फोटो में एक जमीन दिख रहा है जहां पर ब्रिक्स लगा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे झंडे लगे हुवे हैं और साइड में एक बड़ा सा गार्डन है जहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

सामने एक बालू का पहाड़ दिख रहा है जिसके नीचे एक सायकल एक बाइक और तीन चार कारें पार्क हैं।

में बहुत सारे अलग अलग काउंटर बना हुआ है और यहा पर बहुत सारे आयुर्वैदिक मेडिसिंस और कुछ आटा साबुन सब रखा हुआ है।

जिसके दीवार और छत का कलर व्हाइट है और दीवार में दो खिड़कियां भी लगे हुए हैं जो कि खुले हुए हैं।

जिसके काउंटर पर बहुत सारे फोन पे और क्यू_आर कोड चिपकाया हुआ है।

उसके ऊपर भी मॉनिटर रखा हुआ है।